सामने यहाँ पर कोई हो रहा है जहां पर कपड़े बिक्रा हो रहे --

जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है यह एक हॉस्पिटल का चित्र है यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर लोग भी खड़े हुए हैं।